नजर आ रही है और आसमान में कुछ पक्षिया उड़ते नजर आ रहे है।

जो की सफ़ेद रंग की कमीज पहने हुए है ।

और बस पर फूलों की माला लगी हुई है।